है बीच वाली है उसके पंख नजर आ रहे है। यह एक ठेला गाड़ी पर है। पीछे एक रिक्सा एक ऑटो रिक्सा आ रही है। एक अंकल खड़े है जो की येलॉ टी शर्ट मे है।

यहाँ पे बर्थडे पार्टी हो रही है व्हाइट कलर के डॉटस में रेड कलर के बलूंस हैं पीछे भी व्हाइट और रे-रेड कलर के बलूनस के साथ डेकोरेशन है।

और का काफी सारे लोग है जिन्होंने बहुत अच्छे तैयार है एक आंटी के हाथ मे दो गिफ्ट्स भी है और बच्चा है हाथ मे केक है जो कि ब्लू और येलो कलर का है।

यह एक पिकनिक स्पॉट लग रहा है जिसमें एक मशीनरी जैसा कुछ जहाज या कुछ है जिसमें क थोड़े लोग खड़े हुए है पीछे की तरफ काफी सारा पानी है।

यह एक मार्केट है मार्केट में इक शेड लगा हुआ है इप्ती दो तीन ईरिक्शा आ रही है सूटकेस लेकर इक लड़की खड़ी है एक ब्लू कलर की शर्ट में एक लड़का खड़ा है रोड है धुप हो रही है।

यहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी है और दूर-दूर तक कुछ पहाड़ नज़र आ रहे हैं आसमान नज़र आ रहा है।

एक अंकल है जो कि इस साइड खड़े हैं पिंक कलर की दीवाल है उसमें कुछ लिखा हुआ है एक तरफ कुछ ऐसे डब्बा पड़ा है फर्श नजर आ रहा है लाइट्स नज़र आ रही है।

यहाँ पे ब स्कूल का समारोह है बीच में है जो एक लड़की है जो कि तारा तम्बूरा और हाथ में --

सामने एक झाड़ नजर आ रहा है।

यह एक क्रिश्चियन का कल्चर चल रहा है जिसमें येलो कलर का गमछा पेहेन कर कई सारे बच्चे हाथ में कैंडल लिए खड़े हैं।

खुली जगह में एक बाइक रखी हुई है। पानी में एक नौका है। एक लड़के ने ब्लू कलर का पेन्ट और ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है।

मिलिट्री की कुछ नाट्य दिखा रहे है धुआँ निकल रहा है एक स्कूल का समारोह चल रहा है झंडा लगा हुआ है।

यह पिक है जो कि चट्टानों के बीच का है जिसमें बड़े-बड़े झाड़ है।